एक काले रंग की गाय दिखाई दे रही है और दो आदमी नजर आ रहे हैं।

जो की आर_के ब्रदर्स टायर पे टायर चेंज करवाने के लिए आई हुई है।

सामने ही उनकी टीचर्स खड़ी हुई हैं।

यह एक का गेट नजर आ रहा है।